काली पानी की टंकी रखी हुई है।

एक सफेद रेलिंग दिखाई दे रही है।

जिसमें कई लोग नजर आ रहे हैं।

बहुत सारी सब्जियाँ नज़र अ नज़र आ रही हैं।

उसके पास एक स्पीकर भी रखा हुआ है।

और सामने एक बिल्डिंग।

में बहोत सारी कांच की खिड़कियां--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

यह एक गर्ल्स हॉस्टल है।

जिसका नाम शुभम नर्सरी एंड गार्डन शॉप है।

उसपर एक टॉवल टंगा हुआ है जिसका रंग हरा है।

जिसमें कई सारे।

ड्रीम लैंड लिखा हुआ है।

जिसका नाम सिटी पब्लिक कॉलेज है।

आर्टीफिशल फ्लावर शॉप।

रंग कई रंग के --

जिसमें कई लोग दिखाई दे रहे हैं।

ये एक टैटू शॉप है।

यह एक पेट्रोल टैंक है।

दर्जबिन भी रखा हुआ है।